वहां बहोत सारा पौधा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

एंट्रेंस पर एक स्टैचू दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दे रहा है।

यहां पेपर वर्क कर रहा स्टूडेंट्स लोग दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर केटल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक नीचे में फूल खिल रहा दिखाई दे रहा है।

की नीचे एक नदी दिखाई दे रहा है।

पत्थर के ऊपर चाक से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

लड़का के हाथ में एक कार्टून बॉक्स दिखाई दे रहा है।

के बगल पे दो छोटा सा ड्रम दिखाई दे रहा है।

जो यह एक वाइट कलर के वॉल दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक टेबल दिखाई दे रहा है।

घर की बाहर कपड़े सुखाए हुए दिखाई दे रहा है।